इस चित्र में दर्शया गया है कि कुछ लड़के मैदान पर क्रिकेट खेल रहे हैं।

एक लड़का बैटिंग कर रहा है और साइड में पोधे भी नज़र आ रहे हैं।

बहुत सारी गाड़िया भी नज़र आ रही हैं खम्बे भी नज़र आ रहे हैं।

इस चित्र में एक कपड़ों की दुकान दिखाई गई है।

इस दुकान के अंदर एक सीढ़ी भी दिखाई गई हैं।

इस दुकान का कलर पिंक व्हाइट से कलर किया गया हैं इस चित्र में सैनिटाइजर भी रखा गया--

कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी है।

इस चित्र में एक घूमने वाली जगह नजर आ रही है इस मे ऊपर से पानी नीचे की तरफ बहुत ही प्यारा दिख रहा है।

लाइटस भी जल रही है इसका कलर व्हाइट ग्रीन हल्का पिंक नजर आ रहा है।

बहुत ही अच्छा लगा --

इसमे बहुत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे है।

फूल गोभी गाजर खीरा बैंगन--